बहुत ही अच्छा मतलब सब वाइट वाइट एक दम गोल जैसा घेर के रखा हुआ है अच्छा व्यू है ये इधर।

घर का व्यू मतलब बहुत ही बढ़ियां व्यू है यह बहुत ही देख सकते हैं रेड कलर का ये पहना हुआ है।

जैसे की आप देखे सकते हैं ये डांस क्लास हैं यहाँ पे डांस सिखाया जा रहा हैं बहुत ही बढ़िया डांस सिखाया जाता हैं इधर प्रैक्टिस कराया जा रहा हैं। डांस परफॉरमेंस के लिए --

दो भाई इनको ट्रीट्मन्ट दो। देखो क्या अच्छा दम भीयू हैं। बड़ा लंबा सा फील्ड है। यह ग्राउन्ड --

देख सकते है यह काफी अच्छा लोकैशन है गड्डा वड़े खाने जा रहा है पिलर लगाई जाईगा और एक घर बनाई जाईगा देखिए मट्टी बहुत अच्छे कलर की है।

देख सकते है काफी अच्छा व्यू है ये लगता मशीन से इनमें वर्कर लोग काम कर रहे है बेल्डिंग कर रहे है --